यहाँ किसी समुद्र में नाव चल रहा है।

यहां बाजार में ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम है।

हम्म एक बाइक में एक बूढ़ा आवत --

दो लड़कियों को बैठा के लेके जा रहा है।

चारो ओर यह सफेद संगमरमर से बनाया गया है।

किसी नदी के किनारे ये मंदिर बसा हुआ है ।

यहाँ एक व्यक्ति बैठ हुआ है कुर्सी पे बाल अपना काटा रहा है।

ओ चारों ओर अच्छा-अच्छा फूल से सजाया हुआ है।

और उधर एगो अथी जो है टहल रहा है।

और फिसलने के लिए भी यहां बनाया हुआ है उधर।

और यहाँ एक सैम्स सुपरमार्केट है।

बहुत सारा सामान यहां पे बिक रहा है। राशन दुकान की तरह लग रहा है यहाँ।

चारों ओर जो है बलून लगा हुआ है अच्छा-अच्छा। इनका शायद कोई मतलब उट्घाटन चल रहा है।

और ट्वेंटी फाइव पर्सेंट डिस्काउंट का भी ऑफर है। यहाँ पे लगा हुआ है।